चारो तरफ बड़े-छोटे विभिन्न तरह के सोलर प्लेट रखा हुआ हैं।

रात्रि के समय में एक कार्यालय के चारों तरफ लोग दिए जलते हुए तथा रात्रि के समय में एक नवदीप का आयोजन।

कटरी हिल रोड सुधार दूध सेंटर काछे छे जहा सभी दूध को ईकडा कर परिचराइजेसन किया जा रहा है।

चारों तरफ हरी-भरी घासे है और विभिन्न तरह के बड़े पेड लगे हुए हैं।

साथी तीन व्यक्ति के द्वारा मैदान मैं हरी-हरी घासे लगाई जारही हैं।

सुबह का समय मे विवाह समारोह समरोह का आयोजन होता हुआ चारो तरफ ख़ुशी का माहौल तथा एक भवन के बीचों-बीच डेकोरेशन का कार्य होता हुआ --